जावा संस्थापन के साथ शुरूआत पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके जेडीके संस्थापित करना
जावा क्यों
जावा के एप्लिकेशन और प्रकार
यहाँ हम उबंटु वर्जन 1110 और जावा डेवलपमेंट एनवायर्नमेंट जेडीके 16 का उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपका इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है
आपके सिस्टम पर सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर संस्थापित होना चाहिए
आपको लिनक्स में टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर और सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं है तो कृपया spoken tutorialओआरजी पर उपलब्ध लिनक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल देखें
जावा प्रोग्राम रन करने के लिए हमें जेडीके जावा डेवलपमेंट किट संस्थापित करने की आवश्यकता है
जेडीके के बारे में अधिक जानने के लिए आप निम्न लिंक पर जा सकते हैं
अब हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके जेडीके संस्थापित करेंगे
इसके लिए आपको रूट परमिशंस की आवश्यकता है
आपको रिपॉजिटरी चुनने की आवश्यकता भी है
ये लिनक्स पर पूर्वापेक्षा ट्यूटोरियल में पहले से ही बताए गए हैं
अब आपके डेस्क्टॉप के बाएँ कोने पर आप टास्कबार देखेंगे
सबसे ऊपर आप डैशहोम देखेंगे
डैशहोम पर क्लिक करें
सर्च बार में सिनैप्टिक टाइप करें
आप यहाँ सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पायेंगे
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर क्लिक करें
ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आपके पासवर्ड को टाइप करने के लिए कहा जायेगा
अतः अपना पासवर्ड टाइप करें और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करें
यह सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर खोलता है
अब क्विक फिल्टर बॉक्स में जेडीके टाइप करें
हम एक openjdk 6 जेडीके नामक पैकेज देखते हैं
इस पर दायाँ क्लिक करें और मार्क फोर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें
एप्ली पर क्लिक करें
आपको चयनित बदलावों की सूची निश्चित करने के लिए कहा जायेगा
अतः टो बीई इंस्टॉल्ड पर क्लिक करें और फिर एप्ली पर क्लिक करें
संस्थापन कुछ सेकैंड लेगा
अब हम देखते हैं कि ऑप्शन openjdk 6 जेडीके हरे रंग में है
अतः हमारा संस्थापन पूर्ण हो गया है
अब संस्थापन को सत्यापित करें इसके लिए Ctrl Alt और ट कीज़ को एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
मेरा टर्मिनल पहले से ही खुला है
कमांड प्रोम्प्ट में जावा स्पेस हाइफेन वर्जन टाइप करें और एंटर दबाएँ
हम देखते हैं कि जेडीके की वर्जन संख्या प्रदर्शित होती है
विवरण के आधार पर आपका उपयोगित वर्जन नम्बर भिन्न हो सकता है
अतः हमने जेडीके को कुशलतापूर्वक संस्थापित कर दिया है
अब एक सामान्य जावा प्रोग्राम रन करें और देखें क्या यह कार्य करता है
मैंने टेस्टप्रोग्राम डॉट जावा नामक फाइल में पहले से ही निम्न कोड सेव किया है
अब मैं कंपाइल करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ
यह कोड स्पष्ट प्रदर्शित करता है वे हेव सक्सेसफुली रुन आ जावा प्रोग्राम ओन थे टर्मिनल
अतः वापस टर्मिनल पर जाएँ
ध्यान रखें कि मैंने टेस्टप्रोग्राम डॉट जावा फाइल होम डाइरेक्टरी में सेव की है
और अभी मैं होम डाइरेक्टरी में हूँ
अतः कमांड प्रोम्प्ट पर टाइप करें जावाक स्पेस टेस्टप्रोग्राम डॉट जावा
यह कोड को कंपाइल करने के लिए है
एंटर दबाएँ
अब मैं कोड रन करता हूँ
अतः टाइप करें जावा स्पेस टेस्टप्रोग्राम और एंटर दबाएँ
हमें आउटपुट मिलता है वे हेव सक्सेसफुली रुन आ जावा प्रोग्राम
इस प्रकार हमारा संस्थापन सही हो गया है
अब स्लाइड्स पर वापस जाएँ
मैं अब समझाऊँगा कि जावा उपयोगी क्यों है
जावा सरल है
जावा वस्तुनिष्ठहै
यह स्वतंत्र मंच है
यह सुरक्षित है
जावा में उच्च निष्पादन हैं
जावा मल्टि थ्रेडेड है
हम अब जावा के कुछ प्रकार और एप्लिकेशन्स देखेंगे
JSP या जावा सर्वर Pages यह सामान्य एचटीएमएल टैग्स के साथ कोड पर आधारित है
जेएसपी सक्रिय वेबपेजेस बनाने में मदद करता है
Java Applets यह वेब एप्लिकेशन्स को संवादात्मक विशेषताएँ प्रदान करता है
J2EE या जावा एंटरप्राइज Edition कंपनियाँ j2ईई का उपयोग करती हैं
यह एक्सएमएल संरचित डॉक्युमेंट्स को स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी है
JavaBeans जवाबीनों एक दुबारा उपयोग योग्य सॉफ्टवेयर घटक है
इसका उपयोग नई और एडवांस्ड एप्लिकेशन्स बनाने के लिए किया जा सकता है
Mobile Java यह कई मंनोरजन के डिवाइसेस के लिए उपयोगित है जैसे मोबाइल फोन
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सिनैप्टिक पेकैज मैनेजर का उपयोग करके जेडीके संस्थापित करना
जावा प्रोग्राम कंपाइल करना और रन करना
जावा उपयोग के लाभ
जावा के प्रकार और एप्लिकेशन्स
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवॉन द्वारा अनुवादित है
आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद